grading quiz in moodle पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि: छात्रों द्वारा जमा quiz को हल करने के प्रयासों की समीक्षा
quiz में प्रश्न edit
प्रयासों को पुनः regrade
quiz को हल करने के प्रयासों को डिलीट और quiz परिणामों को download कैसे करें
इस tutorial को recorded करने के लिए उपयोग किया गया है: ubuntu linux os 1604
xampp 5630 से प्राप्त apache mariadb और php
moodle 33 और firefox web browser
आप अपनी पसंद के किसी भी web browser का उपयोग कर सकते हैं
हालांकि internet explorer से बचा जाना चाहिए क्योंकि यह कुछ प्रदर्शन विसंगतियों का कारण बनता है
यह tutorial मानता है कि आपके site administrator ने आपको teacher के रूप में पंजीकृत किया है
और आपको कम से कम एक course असाइन किया गया है
यह भी माना जाता है कि आपने अपने course के लिए कुछ पाठ्यक्रम सामग्री assignments और quizzes जोड़े हैं और आपके पास कुछ छात्र logins हैं
यदि नहीं तो कृपया इस website पर प्रासंगिक moodle tutorials देखें
मैं आपको दिखाती how कि एक विद्यार्थी quiz को कैसे हल करेगा जिसे हमने श्रृंखला में पहले बनाया था
मैंने अभी छात्र priya sinha के रूप में लॉगिन हूँ
my my courses में calculus पर click करूंगी
फिर में मैं quiz 1evolutes and involutes पर click करूंगी
मैं attempt quiz now button पर click करूंगी और फिर मेरे चयन तय करूंगी
प्रश्न पत्र मुझे प्रस्तुत किया गया है
दाईं ओर हम quiz navigation block देखते हैं
यह सभी प्रश्न संख्याओं timer और finish attempt link को प्रदर्शित करता है
पहले पेज के प्रश्न quiz navigation block में चिन्हांकित the गए हैं
मैं दोनों sections में प्रश्नों को हल करने का प्रयास शुरू करूंगी
आप किस पेज पर हैं उस पर आधारित यहां पिछले और अगले पेजों के लिए buttons हैं
मैं प्रश्नों को हल करने का प्रयास करता हूँ
यदि मुझे इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है तो मैं quiz navigation block से किसी भी प्रश्न पर वापस जा सकती हूँ
प्रश्न के बाईं ओर ध्यान दें कि प्रश्न को ध्वजांकित करने का option है
एक ध्वजांकित प्रश्न में प्रश्न के शीर्ष दाईं ओर एक लाल त्रिकोण होता है
प्रश्न हल जमा करने या शिक्षक के साथ विषय पर चर्चा करने से पहले प्रश्न पर वापस जाएं और बाद में उसकी समीक्षा करें
जब तक छात्र विशेष रूप से ध्वज को हटाता नहीं है तब तक यह प्रश्न चिह्नित रहेगा
यहां quiz प्रश्नों से संबंधित कुछ अन्य markers हैं
एक grey marker एक उत्तरित प्रश्न को इंगित करता है
प्रश्न संख्या के नीचे एक छोटा लाल त्रिकोण एक अपूर्ण उत्तर को इंगित करता है
एक पूरी तरह से सफेद box अनुत्तरित प्रश्न को इंगित करता है
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है मैं उस प्रश्न पर वापस जाने के लिए किसी भी प्रश्न पर click कर सकती हूँ
जब मैं पूरा करने पर मैं quiz navigation block में finish attempt… link पर click करूंगी
मैं quiz के अंत में finish attempt button पर भी click कर सकती हूँ
submit all and finish button पर click करें और मेरे चयन की पुष्टि करें
जमा करने के ठीक बाद छात्र quiz में अंक और grade देख सकते हैं
quiz navigation block में colorcoded number boxes भी हैं
tickmark वाला हरा marker सही उत्तर इंगित करता है
लाल marker या तो एक गलत या हल करने का प्रयास न किए गए प्रश्न को इंगित करता है
एक सफेद वृत्त के साथ भूरा marker आंशिक रूप से सही उत्तर को इंगित करता है
शीर्षदाईं ओर एक लाल त्रिकोण marker ध्वजांकित प्रश्नों के लिए है
breadcrumbs में calculus पर क्लिक करके course पेज पर वापस जाएँ
मैं quiz के name पर click करती हूँ
मैं अपने प्रयास और एक review link यहाँ देख सकती हूँ
मैं review link पर क्लिक करके अपने quiz प्रयास की समीक्षा कर सकती हूँ
हर उत्तर के लिए दी गई प्रतिक्रिया देखने के लिए नीचे scroll करें
यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है जो प्रत्येक छात्र अपने प्रयास के बाद देखता है
इस छात्र के dashboard से log out करें
एक शिक्षक के रूप में quiz की समीक्षा करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके सभी छात्रों ने quiz को हल करने का प्रयास किया है
tutorial रोकें और आगे बढ़ने से पहले कम से कम 5 छात्रों के लिए quiz को हल करने का प्रयास करें मैंने अपने छात्रों के लिए पहले ही ऐसा कर लिया है
अब मैं शिक्षक rebecca raymond के रूप में login करूंगी
बाईं ओर पर my courses में calculus पर click करें
नीचे स्कॉल करें और quiz 1evolutes and involutes पर click करें
आप इस पेज में quiz विवरण और quiz timeline देख सकते हैं
प्रयासों की संख्या भी यहाँ सूचीबद्ध है मेरे मामले में यह 5 है
attempts link पर click करें
पेज के शीर्ष पर कुछ filters हैं जो स्वव्याख्यात्मक हैं
यदि आपके course में कई छात्र नामांकित हैं तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं
मैं उन्हें छोड़ दूंगी जैसे वे हैं और नीचे scroll करेंगे
बेहतर view के लिए बाईं ओर navigation menu बंद करें
ध्यान दें कि सभी प्रयास यहां एक तालिका में सूचीबद्ध हैं
priya sinha के name के नीचे review attempt link पर click करें
मेरे द्वारा देखे गए प्रश्नों की तुलना में आप प्रश्नों का एक अलग set देख सकते हैं
ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने quiz बनाते समय प्रश्न bank से यादृच्छिक प्रश्न जोड़े हैं
जब वे प्रयास करेंगे तो छात्र भिन्न प्रश्न या प्रश्नों का एक अलग क्रम देखेंगे
हम प्रयास का एक संक्षिप्त अवलोकन देख सकते हैं
priya sinha ने quiz को 3 minutes और 12 seconds में समाप्त कर दिया
उसे 4 में से 12 अंक और 30% भी मिले
इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि छात्र ने quiz में कैसा प्रदर्शन किया है
दाईं ओर पर quiz navigation block पर देखें
tick mark के साथ हरे रंग का box इंगित करता है कि छात्र को उत्तर के लिए पूरे अंक मिले हैं
लाल box इंगित करता है कि छात्र ने प्रश्न का गलत उत्तर दिया
बीच में एक सफेद circle के साथ भूरे रंग का box आंशिक रूप से सही उत्तर को इंगित करता है
आप उस प्रश्न संख्या पर क्लिक करके सीधे किसी भी प्रश्न पर जा सकते हैं
यदि आप प्रश्नों को एक बार में एक पेज पर दिखाना चाहते हैं तो आप लेआउट को बदल सकते हैं
आप प्रत्येक प्रश्न के उत्तर और प्राप्त अंक देख सकते हैं
आप छात्र को दिखाई जाने वाली सामान्य प्रतिक्रिया भी देख सकते हैं
यहां छात्र ने जो किया उसके log के साथ एक response history भी है
यहां ध्यान दें कि छात्र ने अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले एक बार इस उत्तर को सेव कर लिया था
एक शिक्षक के रूप में यदि आप चाहें तो आप किसी भी उत्तर के लिए एक विशिष्ट टिप्पणी जोड़ सकते हैं
आप अंकों को भी override कर सकते हैं देखें कि यह कैसे करना है
common फ़ीडबैक section के नीचे make comment or override marks link पर click करें एक नई विंडो खुलती है
यहाँ दिखाए गए अनुसार वांछित comment type करें
यहाँ दिखाए गए अनुसार मैं अंक भी बदल दूंगा
नीचे scroll करें और save button पर click करें
अब आपका comment common फीडबैक से नीचे दिखाया गया है
response history में आपके द्वारा किए गए परिवर्तनों का एक log भी है
ध्यान दें कि आपके नए manual grading के आधार पर अंक और grade भी बदल गए हैं
आप एक प्रयास से ही प्रश्न को edit भी कर सकते हैं बाईं ओर पर edit question लिंक पर क्लिक करें
यह आपको edit screen पर ले जाएगा जहाँ आप प्रश्न में परिवर्तन कर सकते हैं
आप इससे जुड़े grades के options को भी बदल सकते हैं
ध्यान दें कि यह उन सभी छात्रों के लिए प्रश्न को बदल देगा जिन्होंने पहले से ही quiz को हल करने का प्रयास किया है यह भविष्य के quizzes के लिए प्रश्न को भी बदल देगा
मुझे अब महसूस होता है कि मैंने इस quiz को बनाते समय गलत उत्तर को marked किया था
मैं इन 2 options के लिए grade बदलूंगी
पूर्ण होने पर save changes button पर click करें
जब आप कर चुके हों तो finish review link पर click करें
फिर से attempts link पर click करें
यदि आपने कोई प्रश्न बदला है तो आपको नई grading के आधार पर प्रयासों को फिर से regrade करना चाहिए
regrade all button पर click करें
आप एक संदेश देखेंगे regrade completed successfully continue बटन पर क्लिक करें
ध्यान दें कि उस प्रश्न के लिए grade कुछ छात्रों के लिए बदल गया है
आप चाहें तो किसी विशेष प्रयास को हटा भी सकते हैं
उस छात्र के name के आगे स्थित checkbox पर click करें जिसका प्रयास आप हटाना चाहते हैं
फिर delete selected attempts button पर click करें लेकिन मैं यह अभी नहीं करूंगी
शिक्षक के पास विभिन्न फ़ाइल formats में सभी प्रयासों को download करने का विकल्प भी है मैं प्रदर्शित करती हूँ कि कैसे
section what to include in the report तक ऊपर scroll करें
मैं विभिन्न मानदंडों के आधार पर reports filter कर सकती हूँ
मैं उन सभी नामांकित छात्रों की report download करती हूँ जिन्होंने quiz को हल करने का प्रयास किया है
मैं attempts that are में बाकी checkboxes को अनचेक कर दूंगी जो finished reports को देखने के लिए इसे संकीर्ण कर रहे हैं
show report button पर click करें
report तालिका के ऊपर दाईं ओर dropdown download table data as पर click करें
options से opendocument ods चुनें
इसके बाद download button पर click करें फ़ाइल को अपने लोकल मशीन पर सेव करें
file खोलें आप यहां प्रयासों के विवरण let सकते हैं
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा कि छात्रों द्वारा जमा quiz को हल करने के प्रयासों की समीक्षा
quiz में प्रश्न edit प्रयासों को पुनः ग्रेड
quiz को हल करने के प्रयासों को डिलीट और quiz के परिणामों को download कैसे करें
यहाँ आपके लिए एक छोटा सा नियत कार्य है किसी अन्य छात्र के प्रयास की समीक्षा करें
प्रश्नविशिष्ट टिप्पणियाँ post करें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएँ आयोजित करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया अपने समयबद्ध प्रश्न इस forum में post करें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस mission पर अधिक जानकारी दिखाई गई link पर उपलब्ध है
यह script विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ